यह तस्वीर मे एक बड़े से वाहनों की गैरेज की दृश्य दिखाई दे रही है।

जहां विभिन्न विभिन्न वाहने लगी हुई दिखाई दे रही हैं जिसमें बहुत सारे सफेद रंग के कारे भी हैं और एक भूरा रंग का है एवं कुछ डस्टबिन भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर में पीछे एक इमारत का दृश्य दिखाई दे रहा है।

एवं कुछ मोटरसाइकिलें भी दिखाई दे रही है और कुछ ट्रकें भी दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर में एक सफेद रंग के पिकअप की दृश्य दिखाई दे रही है।

जो कुछ बैठे हैं एवं कुछ खड़े हैं और एक बड़ी पेड़ भी दिखाई दे रही है और सामने एक मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रहा है।

यहां सामने एक कांच की बनी हुई फ्रिज दिखाई दे रही है जिसमें केक रखे हुए हैं।

हम सामने एक बाहर कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

एवं आसमान साफ एवं नीला दिखाई दे रहा है दुकान का रंग सफेद है।

जहां एक काले रंग का बीच रोड दिखाई दे रहा है।

एवं बड़ी बड़ी पिलरें भी दिखाई दे रही है एवं कुछ व्यक्ति सर में टोपी भी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

और बहोत सारे पेड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर में एक दुकान की अंदरिये हिस्से की दृश्य दिखाई दे रही है।

और इसमें कई विभिन्न विभिन्न प्रकारों के डब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं एवं कुछ चॉकलेटी भी रखी हुई दिखाई दे रही है और कुछ हॉर्लिक्स के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं एवं सीलिंग की रंग सफेद है।

और रैक के भी रंग सफेद से रंगी गई है।

जिसका शोईन्ग बोर्ड पे नाम रोहन चाय सेंटर है।

और पीछे एक सफेद रंग की ग्रिल भी दिखाई दे रही है और उसके पीछे एक दरवाजा है जो सफेद रंग से रंगा गया है एवं दुकान के अंदर कुछ सामाने भी टंगी हुई दिखाई दे रही हैं।

प्रवेश द्वार पे भी कुछ चित्र बनाए गए है।

और उसमें बहुत सारे बेंच डेस्क लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिस पे बच्चे बैठे हुए है।

और कुछ सफेद रंग के कागज पे चित्र बना रहे हैं और उनकी बस्ते पीछे रखे हुए दिखाई दे रही है।

और उसमें एक लाइट भी जल रही है एवं उसके बगल में कुछ दो कांच की बनी हुई मटके दिखाई दे रहे हैं।

एक कमरे के अंदर ये हिस्से की दृश्य दिखाई दे रही है जहां कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर में एक कमरे के अंदर की दृश्य दिखाई दे रही है जिनमें कई कुर्सी एवं टेबलें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

जहां एक सफेद रंग की कार लगी हुई दिखाई दे रही है और वह धूल रही है एवं पीछे कुछ व्यक्ति भी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ व्यक्ति हरे रंग के कुर्सी पर बैठे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

दुकान का शोइंग बोर्ड पर डॉल्फिन कार स्पा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एवं कई पोस्टरे लगे हुए दिखाई दे रहें है।

यह तस्वीर में एक कई मंजिलों की इमारत की दृश्य दिखाई दे रही है जिसका प्रवेश द्वार का रंग नीला है एवं बाहर कुछ सीढ़ी भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

और कुछ पेड़ के पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं एवं सामने एक दुकान भी दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर में एक दो मंजिलों की इमारत की दृश्य दिखाई दे रही है जिनमें कई दरवाजे एवं कुछ खिड़कियों दिखाई दे रही है।

और एक छोटी मोटरसाइकल भी दिखाई दे रही है एवं आसमान साफ एवं नीला दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक दुकान कि दृश्य दिखाई दे रही है।

जहां एक काले रंग का कुर्सी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है एवं उसके बगल में भी एक--

यह तस्वीर में एक बड़े से कमरे की दृश्य दिखाई दे रही है।

एवं दीवारों के रंग लाल एवं पीली से रंगी गई है और उनमें कई दरवाजे एवं खिड़की लगी हुई भी दिखाई दे रही है।

और पेट्रोल पंप की फर्ज ईट की बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

एवं कुछ फोटो भी टंगे हुए दिखाई दे रही हैं।

यह तस्वीर में एक बड़े से डैम की दृश्य दिखाई दे रही है जिसका पानी का बहाव बहुत तेज जा रहा है और उसके अगल बगल बहोत सारे पेड़े भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं और आसमान साफ एवं नीला दिखाई दे रहा है।

इसका दीवार का रंग नीला है और उसके बाहर कई सजावटी के सामाने रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और दीवार की रंग काली दिखाई दे रही है।